यह नदी हैं। नदी के ऊपर बाँध बाँधा गया है। जिससे की पानी का करंट को कम किया जा सकता है। पानी की रफ्तार को धीमी का दृश्य बिजली भी उत्पादन किया जाता है।